ये भी गुफा जैसा दिखाई दे रहा है एक लड़का है जो नीले कलर का टी-शर्ट पेहना है और हाथ मे मोबाइल रखा है। एक आदमी हे जो रेड कलर का टी-शर्ट पेहना हुआ है।